यहां हमें बहोत अच्छे टाइल्स लगे हुए दिख रही है।

यहां उनके पीछे में एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे भारतीय स्टेट बैंक लिखा हुआ है।

यहां पूरी हरियाली ही हरियाली दिख रही है।